हमारे सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है यह हॉल काफी लंबा एवं काफी चौड़ा है इस हॉल के अंदर कई सारे विभिन्न प्रकार की बॉडी बनाने वाली मशीनें रखी हुई हैं।

हमें एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है यह हॉल काफी लंबा एवं काफी चोड़ा दिख रहा है ।

हमारी सामने एक तालाब दिखाई दे रहा है यह तालाब काफी लंबा एवं काफी चौड़ा है।